अ ये एक रोड से फोटो लिया गया है जिसमे एक रास्ते में एक साइकिल खड़ी है कच्चा रास्ता है और ब इसके आगे अ पेड़-पौधे लगे हुए है।

ये एक शंकर शंकर जी का मंदिर है ये ब्राउन कलर का यहाँ पे एक टाइल्स लगा हुआ है बीच में शंकर जी का मूर्ति रखी हुई है शिवलिंग रखा हुआ है।

और बाहर एक ग्राउंड बना हुआ है जिसमें के बहोत अच्छा गा गार्डन सेट है पेड़ पौधे अच्छे से सेट होकर लगे हुए हैं।

य यहाँ पे एक बिल्डिंग है येलो कलर का पेंट है जिसमें और एक नीचे एक बैंक है और अ बाहर खंभे लगे हुए है।

ये एक प्ले ग्राउंड है जहा और बच्चे खेल् रहे है एक घर दिख रहा है कच्चा और एक घर दिख रहा है पक्का जिसमे पिंक और ग्रीन कलर का पेंट है कुछ बच्चे खेल रहे है कुछ सायकल चला रहे है यहा पे पेड़ वेद लगे है लगे हुए है।

ये एक शूज का शॉप है जिसमें की उसका नाम लिखा हुआ है और बाहर एक स्टूल रखा हुआ है बड़ा और रेड कलर का बोर्ड रेड कलर का पेंट है उस --

व्हाइट कलर से और येलो कलर से शूज की शॉप का नाम लिखा हुआ और कांच का केबिन जैसा बना हुआ है उसमें उनके शूज रखे हुए हैं और अंदर शूज रखे हुए हैं शॉप में।

अ यह एक शॉप है क्लोथ्स की शॉप है यहाँ पे क्लोथ्स रखे हुए हैं और ये यहाँ पर एक ब्लू कलर का केबिन जैसा वुडेन का वो लगा हुआ है सेट ।